बाहर कुछ कुर्सी और टेबल दिखाई दे रही है बाहर एक छतरी भी बने हुए दिखाई दे रही है यहां --

कैफे के पास ही कुछ बिल्डिंग्स भी दिखाई दे रही है यहां पर पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं।

यह इमेज एक मंदिर की है यहां पर एक बड़ी सी बेल की प्रतिमा दिखाई दे रही है यहां पर कुछ लोग बैठे हुए हैं ये --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

दिखाई दे रही है यहां पर मंदिर में घंटा भी बना हुआ नजर आ रहा है यहां पर एक बड़ा सा ढोल भी दिखाई दे रहा है।

येह इमेज एक गार्डन की है यहां पर बहोत सी बैठने की--

इस इमेज में बहोत सारे मंदिर--

एक व्यक्ति बैठा हुआ है यहां पर बाहर बाइक और साइकिल खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

एक बिल्डिंग और दिखाई दे रही है यहां पर कारें दिखाई दे रही है एक व्यक्ति भी नजर आ रहा है।

यहां पर पास ही में चिड़िया दिखाई दे रही है यहां पर--

यहां पर कुर्सियां भी नजर आ रही है यहां पर दो लकड़ी की अलमीरा बनी हुई है जिस पर कुछ सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

इसमें जिम की बहोत सारी मशीने दिखाई दे रही है यहां पर लाइट्स जली हुई है।

किया जा रहा है यहां पर बहोत सारे बैलूंस दिखाई दे रहे हैं यहां पर कुछ लोग कुर्सियों पर बैठे हुए हैं कुछ लोग --